ये सीएट ट्रैक्टर का फैक्ट्री का टायर है।

जो अच्छा दिखाई दे रहा है बहोत ही अच्छा लग रहा--

चल रहा है काम धीरे-धीरे चल रहा है मेरा वेरीफाई हो गया है।

मुझे इस चित्र में एक मैथिली स्टोर दिखाई दे रहा है और--

अलमारी में दवाई भी रखी गई है और लाइट बहोत अच्छा जलता हुआ दिख रहा है।

और कुछ लोग सामान लेने आते जाते नजर आ रहा है।

मुझे इस चित्र में एक सोफा सेट दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक टी_वी_एस स्टार सिटी का गाड़ी दिख रहा है।

जिसमें कुछ लाइन से लोहा भीं रखा गया हैं।

एक मछली की दुकान पर एक टोकरी में पानी भी रखा गया है।

और ऊपर लोहे का चद्दर से एक मकान छाया हुआ है।

मुझे इस चित्र में एक बढ़िया लाइटिंग का गुंबद दिख रहा है।

और इसमें चवनप्राश और बाबा देव रामदेव का दवा भी रखा गया है।

मस्जिद के ऊपर आसमान बहोत ही साफ और सुधरा दिखाई दे रहा है।

और यह किसी विद्यालय का प्रदर्शन प्रतीत होता है।

मुझे इस चित्र में एक हरा हरा गार्डन दिख रहा है।

मुझे इस चित्र में एक बहोत बड़ा मकान दिख रहा है।

यह पत्थर किसी दुकान में बिछने के लिए लगा है।

और कुछ लोग यह पत्थर कटवा के ले भी जा रहे हैं।

मुझे इस चित्र में एक गोल खाद नाम का एक व्यक्ति दिख रहा है।

वैसे मैं इसका नाम तो नहीं बता सकता और इसका चेहरा मुझे नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन बं--

ओवर ब्रिज के नीचे बहोत ही कलर के फूल दिखाई दे रहे हैं।

और एक आसमान नीला दिखाई दे रहा है।

और मुझे एक चर्च का सिंबल भी दिख रहा है।